दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर मैच का कुछ स्टेडियम --

दिखाई दे रहा है। बादल पूरे ढके हुए दिखाई दे रहे है और यहाँ पर ग्रीन घास नीचे जमीन पे दिख --

जिसमें लाल कलर के गेट पे पेंट हुआ है। यहाँ एक सीट --

नक्शा दिखाई दे रहा है और ये पूरा स्कूल बंद दिखाई दे रहा है। अ पथवी --

वहां पर व्हाइट कलर के सोफ़े लिखाई दे रहे हैं। वहां पर गोल्डन कलर की चेयर सोफ़ो के पीछे लिखाई दे रही है।

ये मुझे घे घर का नजारा दिखाई दे रहा है। जहाँ पर बहोत सारी बिल्डिंग है।

और पानी इतने बहाव से बहता हुआ दिखाई दे रहा है।

अं इस पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ ऊपर पोस्टर मे लिखा दिखाई --

यह एक बोहोत बड़ी सी दुकान दिखाई दे रही है। जहां पर दुकान के सामने कुछ गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही हैं कुछ बाइक --

और यहाँ पर पीछे मोबाइल टावर भी बहोत सारे दिखाई दे रहे हैं।

उसके सामने एक पा बोलेरो का गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है और यहाँ पर ग्रीन कलर के झाड़ --

यहाँ पर बहोत सारे लोग साइकिल से जाते और बाइक से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चा --

वो खिलोनों की दुकान पे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

तरह-तरह की मशीनें रखी दिखाई दे रही हैं। कुछ यहाँ पर मशीनें एं यहाँ पर --

और रोड पूरा खाली दिखाई दे रहा है। रोड के पीछे साइड कुछ एक --

बोहोत सारे लगे दिखाई दे रहें हैं। लाइटिंग भी बोहोत सारी दिखाई दे रहा हैं। व्हाइट कलर की चेयर पिंक कलर के --

की दिखाई दे रही है जो एक आदमी सिलाइडर --

अ बुद्ध समाज के और कुछ हिन्दू समाज के दिखाई दे रहे।